लड़का लोग छलक ने वाला है.

दो अमूल स्प्रे का डब्बा रखा हुआ है साबुन का रखा हुआ है।

स्ट्रॉबेरी का एक पैकेट रखा--

और कुछ बाइके खड़ी हैं और कुछ आदमी लोग भी खड़े हैं.

पखल दिख रहे है ऊपर से बिजली का तार पार हुआ है.

ऊपर में तिलंगी लगा हुआ है.

इस फोटो में एक ट्रक है.

और एक मुनि आग में बैठ के यज्ञ कर रहे हैं.

आगे पंखा रखा हुआ है।

जिसका नाम भास्कर क्लब --

शिक्षक दोनों तरफ से बेंच के बीच में है.

बेंचे नीले कलर के हे ऊपर एक फैन हे बेलून भी टंगा हुआ हे.

तीन गेंद टाइप का रखा हुआ है बैठने वाले पे।

झालर लटके हुए बैलून है.

साइड में पार्क तरफ टाइप का है।

यहां पे एक मुर्गी का गोदाम है मुर्गी पालन वाला.

यह टू इन टू टू ए_सी स्लीपर कोच है.